दो गाय खड़ी हुई है दूकान है बाजु में मंदिर बना हुआ है तस्वीरें लगी हुई है ।

एक बहुत बड़ा झूला लगा हुआ है झूला लाइटो से सजा हुआ है।